नीचे बहोत सारे यहां पे सोफा बना हुआ है सामने रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

और यहां पे लोग खड़े हैं गाय को देख रहे हैं और आ गाय के मुंह पे रस्सी बंधी है।

और औरत ने साड़ी पहनी हुई है पीछे फ्लावर की डेकोरेशन हो रखी है।

पीछे परदे हैं यहां पे लाइट्स लगे हैं।